यहाँ पर हमने गिटार ऑर्गन और ढोलक दिखाई दे रहे है ढोलक का रंग जो है लाल और सफेद रंग है तथा --

हल्का कत्थई रंग पुत रहा है सामने बादल काला नजर आ रहा है तथा एक टपरियां भी दिख रही है जिस पर कुछ हरा कुछ पीला रंग का कपड़ा डल रहा --

यहाँ पर हमें गाये और भैस दिखाई दे रहे हैं जिनके चार पैर है थन दिखाई दे रहे है भैस के पीछे की ओर दीवाल हैं दीवाल पर कुछ जंगले भी दिखाई दे रहे हैं।

पत्थर दिखाई दे रहे है पत्थरों की दीवाल दिखाई दे रही है जिस पर सफेद अक्षर में कुछ लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा हैं सामने कुछ छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे है।

सफेद रंग के स्टूल पर रखा हुआ है उसके ऊपर एक चिलम लग रही हैं।

दीवाल पक्के पी ऊपर की ओर एक चद्दर भी लगी हुई है उस पर एक पाईप लगा हुआ है पाईप के उपर एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जो की नीचे की ओ--

यहाँ पर हमें एक घर दिखाई दे रहा है घर के बाहर एक गेट लगा हुआ है जो की परपल और सफेद रंग का पुता हुआ है।

कुछ लोग यहाँ पर पढ़ाई करते नजर आ रहे है कुछ लोग अखबार भी पढ़ रहे है चेयर पर बैठे है कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे --

यहाँ पर हमे एक स्विंग पूल दिख रहा हैं जिसमे एक गोल डिजाइन का लाल पीला हरा रंग का कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा हैं पीछे आसमा--